ये तस्वीर जिम के अंदर का है। जिम में बहोत भारी-भारी बड़े-बड़े --

इसमें वो सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है जय सूर्याय नमः पर्दा टंगा हुआ है। सूर्य भगबान का।